यहां पर एक झरना दिख रहा है जिसमें कुछ व्यक्ति नहा रहे हैं और दो व्यक्ति दिख रहे है झरना में ऊपर से नीचे आ रहा है।

तैइयो रोड पे चलते है दु पहिये चार पहिये छे पहिये और भी अन्य चीजें इन्हें सुधारा जाता है यहां पर।

यहाँ पर बहुत सारे दुकान दिख रही हैं बैंक दिख रही हैं जिसमें पैसा निकलता है डालता है यहाँ पास में एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे कुछ साउथी में भी लिखा हुआ है।

और यहां भी कुछ थोड़ी-थोड़ी सो भाई बकरियां सो --

यहाँ पर एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है यह एक स्कूल हो सकता है एक कॉलेज हो सकता है एक अकेडमी हो सकती है।

ये कोई संस्थान हो सकती हैं प्रशिक्षण हो सकता है संस्था प्रशिक्षण हो सकती हैं या ऑफिस हो सकता है या कारखाना हो सकता।

एक छोटी बाइसाइकल रखी हुई है पेड़ दिख रही है दिख रही है और यहां पर तीन लोग दिखती है जो की अंदर जाते हुए दिख रहे हैं मंदिर के।

यहां सामने एक स्कूल सो कर रहा है बड़ा-सा स्कूल दिख रहा है और

और यहां पर एक और यहां पर एक जो --

ए-ए-ए फीमेल जेनरल वार्ड है तो यहां पे --